और पेंट के डब्बे रखे हैं।

कुछ लेडीज़ है और बाल्टी भी रखी है।

और यहाँ फ्लोर भी पड़े हैं कुछ आदमी डांस कर रहे हैं।

ऑटो भी खड़ी है और कुछ लेडिस है।

ये एक रूम है इसमे एक काउंटर रखा है।

उसके अंदर कढ़ाई रखी है।

पर्दे भी लगे हैं और पंखा लगा है।

और चारों के चेहरे छुपे हैं उसके आसपास कुछ लोहे का जाल बना है।

यहां कुछ शीशें भी हैं और कुछ सामान रखा है।

और एक मैडम एक आदमी खड़ा है।

यहां कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हैं।

और एक काउंटर रखा है जिसमें कुछ दवाई की शीशी रखी है।